एक रोग दिख रहा है बहुत सारी मोटरसाइकिल ले जा रहे है लोग उधर से ]

एक आदमी दिख रहा है उसने पर्पल कलर की शर्ट पहनी है जिसपे लाइन्स व्हाइट कलर की उसकी बटन व्हाइट कलर की उसने हाथ में रेड धागा और धागा पहना हुआ हैं।

एक आदमी खड़ा हुआ है उसने चश्मा पहना है उसने हलके ग्रीन कलर की टीशर्ट पहनी हुई हैउसने चड़ा पहना है हलके ग्रे कलर का वो नंगे पाँव है पत्थर के पीछे खड़ा हुआ है।

एक आदमी दिख रहा है ब्लैक शर्ट में उसने चश्मा लगाया हुआ है उसके पैर में कुछ नहीं पहना उसने पीछे नदी दिख रही है।

एक डेकरैशन पीछे की दीवाल पे लगे हुआ है कुछ लोग दिख रहे है आस-पास दो तीन लेड़िजें आगे है दो लेड़ीजें आगे है एक जैंट्स पीछे है नीचे रेड कार्पेट उसके बाजू में ग्रीन कार्पट हैं।

सामने मे एक गाड़ी खड़ी है दो आदमी खड़े हुए हुए है गेट खुला हुआ है आगे और पीछे का दोनों का--

दो लड़के दिख रहे हैं एक ने चश्मा पेहना है एक ने ब्लैक टी-शर्ट पहनी हुई है एक ने ग्रीन टी-शर्ट पहनी हुई है दोनों के टी-शर्ट पे कुछ लिखा हुआ है--

दो आदमी दिख रहे है गुफा में एक आदमी जा रहा है आस पास पत्थर पड़े हुए है पत्थरो पर थोड़ी थोड़ी काई जमी हुई हैं।

अंकललोने धोती पहनी हुई है। हाथ में अगरबत्ती है। प्रणाम कार रहे हैं ।

और आसपास हरियाली है पेड़ -पौधे है पीछे मजदूर काम कर रहे सरिया है सरिया बांधा हुआ है ऊपर आसमान है चप्पल पड़े हुए है जूते पहने हुए है उसने --